जहां पे हर एक खांचा में बहुत सारा आयुर्वेदिक दवाय के दोकान ब दवाई रखल बाटे।

और गेट के बाहर की तरफ फूल से ।

इ एगो कोई ब्यक्ति के पैर बा।

ये एक मंदिर के एक तरफ के पार्ट लगता--